व्हाईट कलर के गुब्बारा से सजाया गया है रेड कलर के गुब्बारा से सजाया गया है केक को अच्छा तरीके से काटा गया है जो देखने में बहुत ही अच्छा है।

यहाँ पे एक रोड है यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं यह एक पहाड़ के साइड का फोटो है जो देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है।

बहुत ही बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है गेट एक बाहर एक रास्ते हैं जोकि रास्ते देखने में बहुत ही सुन्दर लग रही है।

यहाँ पे काउंटर के सामने एक बुद्धा बुद्धी खा रही है जोकि देखने में अच्छा लग रही है।

जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है रोड के आरपार हरियाली ही हरियाली है जो देखने में बहुत ही सुन्दर लग रही।

यहाँ पे एक पिलर बनाया गया है उसपे बहुत सारे आदमी बैठा गया है यहाँ पे सन लाइट दिख रहा है वहां पे एक घर दिख रहा है।

इसके बाहर एक इंसान खड़ा है जो कि हाथ पे हाथ धरे हुए खरा रहा है यहाँ पे वाइट कलर का शर्ट पहने हुआ है ब्लैक कलर का दोनों लोग पैंट पहने हुए है जो कि देखने में अच्छा लग रहा है।

जो कि खरीदारी करने आए हुए हैं यहाँ पे एक पोस्टर है जो कि वी टू लिखा हुआ है रेड कलर का है यहाँ पे एक इंसान का फोटो है जो दीवाल पे है जो अच्छा लग रहा है देखने में।

जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे साइड में कुछ व्हाईट कलर का दिख रहा है जोकि वो अलमारी का पोर्सन है।

और हम अम्दुर को हाथ में रखा गया है यह ब्लैक कलर का है जिसमें में रोंपा गया है जो देखने में सुन्दर और खूबसूरत--

यह एक लड़की का फोटो है लड़की यलो कलर का शर्ट पहने हुए है व्हाईट कलर का ओढ़नी धरी हुई है नल से पानी निकाल रही है पतीला में।

यह एक गुफा का फोटो है गुफा में से एक इंसान निकल रहा है जोकि ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ है ब्लैक कलर का पैन्ट पहना हुआ है।

जोकि देखने में खूबसूरत और अच्छा लग रहा है क्योंकि ये गुफा से निकल रहा है इसलिए अच्छा लग रहा है --

यहाँ पे दो रेजर लाइट है जोकि एक शीशा में दिख रहा है एक ओरिजनल है यहाँ पे एक माइक पे रखा गया है।

यह एक छोटा सा पार्क है पार्क में बहुत सारे लोग बैठ हुए हैं बहुत सारे टहल रहे हैं यहाँ पे एक ये नहर है जोकि देखने में खूबसूरत है।

यह एक बेड का फोटो है बेड पर ब्लैक कलर का बैग को रखा गया है एक चश्मा है जोकि ब्लैक कलर का है।

यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे को लगाया गया है।

यहाँ पे दो है जोकि ब्लैक कलर का है दोनों में लगाया गया है।

यहाँ पे चाय का ग्लास है एक पानी का बॉटल है यहाँ पे दीवाल पे पोस्टर को चिपकाया गया है जोकि अच्छा है और दिखने में भी अच्छा लग रहा है।

जोकि व्हाईट कलर का फैन है।

यहाँ पे एक लड़का है जोकि ब्लैक कलर का शर्ट पहने हुए है ब्लैक कलर का घड़ी पहने हुए है जो दिखने में फोटो अच्छा लग रहा है।

यहाँ एक आर_ के_ डी_ कॉलेज राधा कृष्णा दर्शिका महाविद्यालय का फोटो है यहाँ पे बहुत सारे बाइक को लगाया गया है यहाँ पे व्हाईट कलर का कार है।